सामने कुछ पेड़ के सुखी डालियां दिख रहे है और कुछ पत्ते दिखाई दे रहे है पीछे की तरफ भी बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पेड़ के छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। पास मे ही एक मैदान दिख रहा है।

इस तस्वीर मे सामने एक बालकनी दिख रहा है। छोटे-छोटे स्टंप दिख रहै है। सामने दीवार पे कुछ तस्वीरे लटके हुए है।

कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है। एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसपे ताला लगा है। कुछ खिड़कियां दिख रहे हैं ।

एक गिरजा घर के अंदर का तस्वीर है। सामने इशू-मसीहा दिख रहे हैं। पीछे का दीवार दिख रहा है जिसका रंग सफ़ेद है ।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

पीछे की तरफ मैदान दिख रहे हैं जिनमे हरे-भरे घांस दिख रहे हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आसमान दिख रहा है।